सूरज की किरणें ढल रही हैं और कुछ घने घने से जंगल दिख रहे हैं और एक बहुत ही लंबा टावर दिखाई दे रहा है।

छत है यहां पर ग्रीन कलर का मैट बिछाया हुआ है।

उसके आसपास में मिट्टी सूखे पत्ते और हरे से दिखाई दे रहे हैं और आसपास में बहुत सारे--

कुछ पुरानी इमारतें दिखाई दे रही है जो कच्चे पक्के मकान बनाए हुए हैं आसपास में से आ रही जगह ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं।

और नीचे कुछ ईंटे वगैरह पत्थर वगैरह दिखाई दे रहे हैं और पीछे कुछ पेड़ हैं और पीछे कुछ बिल्डिंग्स हमें दिखाई दे रही हैं और कुछ--

जोकि बहोत अच्छे से डेकोरेट किया गया है वहां पे थोड़ा सा ट्री बनाया हुआ है।

इसमें कुछ सारे बेल्डिंगा दिखाई दे रहे हैं और यहां पर--

काले रंग की सफेद रंग की गाड़ी दिखाई दे री है और पास में ही कुछ पंजाब नेशनल बैंक दिखाई दे रहा है और एक आदमी इस कार के अंदर बैठा हुआ हैं।

और सामने कुत कुछ दुकानों के बाहर समान रखा हुआ है।

सामने जो नजर आ रहा है जे दो बहुत खूबसूरत सफेद रंग की गाड़ियां हैं।

लाल कलर की कैप डाली हुई है और--

एक बहोत बड़ी विंडो दिखाई दे रही है।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

पानी की अ दो कुछ पेंटिंग की हुई है हरे और पीले रंग की--

नील और काले रंग के कपड़े पहने हैं और लाल रंग के जूते पहने हुए आस पास में बहोत बड़े पेड़ दिखाई दिए रहे--

जहां पर एक बहोत बड़ा हाल दिखाई दे रहा है जहां पे बहोत अच्छे अच्छे और सुंदर रंग के फूल रखे गए हैं व्हाइट ग गुलाब के।

सफेद रंग की लाइटें दिखाई दे रही हैं और कुछ गमले यहां पे दिखाई दे रहे हैं।

रोड है और कुछ ऑटो दिखाई दे रहे हैं और आसपास में पेड़ दिखाई दे रहे हैं और--

पास में ही ये बिजली के दो तीन खंभे लगे हुए हैं।

बैठने के लिए सोफा रखा हुआ है और यहां पे--

वो लगे हुए है जहां पे पिंक और सफेद रंग के और पीले रंग के और लाल रंग के--

फूल दिख रहे हैं और सामने कुछ छोटे सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और सामने ही एक बहुत बड़ी पानी की पाइप भी दिखाई दे रही है।

जहां पर हम एक बड़ी शॉप देख रहें हैं।

खड़े होकर उस पानी का नजारा ले रहे हैं।